यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लाइट की तारे लगी हुई साफ देखी जा सकती है अगल बगल में बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है।

सामने एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है रंग के सामने एक बुढा व्यक्ति दिखाई दे रहा हे जिसकी सफ़ेद रंग की शर्ट --

और सभी बोगियों में बहुत सारी खिड़कियां भी लगी हुई है कुछ गेट भी देखे जा सकते हैं सामने एक बड़ा सा खंभा दिखाई दे रहा हैसामने एक बोर्ड --

की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी पेड़ देखी जा रही है सामने यहां पर एक ग गेट देखा जा रहा है इसे काले रंग से पेंट किया गया है नया स्थान देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

करो ऊपर आकाश साफ देखा जा सकता है पीछे कोई बड़ा सा बिल्डिंग जैसा देखा जा सकता है।

यहाँ पर ऊपर एक आकाश भी देखा जा सकता है कुछ सफेद कलर के बादल देखे जा सकते है बगल में एक बड़ा सा टावर जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसके ऊपर कुछ सोलर पैनल जैसे लगाए गए है।